इसमें पीले अक्षरों ऊपर जे.पी. हंडसूल लिखा हुआ कांच कि गेट लगा हुआ है कांच बिल्डिंग लगी हुई हैं कुछ जिना लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

घेरा लाल लालनीला हरा सफ़ेद पट्टा लगा हुआ गोल कलर में है इसके ऊपर लिखा है सेय स्वामी सहजानन्द स्नोकोतर महाविद्यालय लिखा हुआ है इसके भीतर बिल्डिंग बनी हुई गेट लगे हुए जो काले कलर के --

बेहतरीन पार्क का नजारा दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर टिन शेड लगा हुआ है और इसमें एक चबूतरा बना हुआ है उसमे रेलिंग लगी हुई है सीढियां बनी हुई हैं उसमे दो प्रतिमा रखी हुई है एक नेता जी कि --

और इसमें नीचे लाल रंग की चटाई बिछी हुई है। बगल में एक दो मंजिल बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो पीले रंग की पुती हुई है और इसमें नील रंग की म्म --

में पर्दे लगे हुए ऐं बोहोत ही प्यारा सीन सजा हुआ दिखाई दे रहा है सामने स्टेज बनी है नीचे लाल रंग की चटाई बिछी हुई दिखाई दे रही है और उसमे लाइट जल रही ऐं ऊपर नीला रंग दिखाई दे रहा है अच्छा डेकोरेट है।

मेन गेट लगा हुआ है। मेन गेट के सामने एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसमें मैदान पड़ा हुआ है। मैदान में सफ़ेद कलर के टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े दो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग सफ़ेद कलर --